काफी पिलर में पोताई नहीं दिखा रही कुछ जगह काई लगी हुई हैनीचे सीमेंट रेड है।

सामने एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है पत्थर की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जो ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है निचे कुछ दरवाजा लगा हुआ है एक बड़ा पत्थर है।

और रबड़ी दिखाई दे रही है वाइट कलर की गुलाब जामुन दिखाई दे रहे है।

हाथ जोड़े सिर पे वाइट कलर की टोपी लगाए हाथ में घड़ी पहने हाथ जोड़े खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक दरवाज़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ नकासी भी उसमे करी हुई दिखाई दे रही है।

दीवार का रंग नीला है और दरवाज़ा जो लगा हुआ है हरे रंग का दरवाज़ा लगा हुआ --